यह व्यक्ति ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

यह एक उद्यान की तस्वीर है।

ऊपर में एक तल्ला और बन रहा है ।

तथा आने जाने वाले रास्ते भी लाल है।

यह दुकान पटेल नगर राजा बाजार जहानाबाद में है।

टेबल में एक ग्लास में पानी रखा हुआ है।

यह कोई सुपर मॉल की तस्वीर है।

एक ऐ_सी लगा हुआ है कुछ तेल दिख रही है आटा दिख रहा है।

यह कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

रेस्टोरेंट में आकर्षक विधुत संचार भी की गई है।

जिसमें दुकानदार अंदर बैठा हुआ है।

रास्ते के किनारे कुछ वस्तु की बिक्री हो रही है।

इस तस्वीर में एक महिला नजर आ रही है।

तस्वीर में बहुत सारे गमले नजर आ रहे हैं।

कुछ कुर्सियां रखी हुई है।